इसमें जो मूर्तियां है वह काफी खूबसूरत है इनके जो कपड़े हैं वह भी बहुत अच्छे हैं ।

यहाँ इसको बहुत अच्छे से डैकोरेट किया गया है इसको बैलून से अच्छे से डैकोरेट किया गया है इसके आगे बहुत सारी बाइक्स भी लगी है।

इस जगह को यहां बहुत सारे पेड़ पौधे हैं बहुत शांति है बहुत अच्छी जगह है ये ।

यहां पे बहुत सारे लोग हैं यहां एक शॉप भी है जिसका नाम स्नैकस बर है जहां से हम कुछ भी खरीद सकते हैं ।

यह जू की फोटो है जहां पर एक पेड़ पे एक भालू का बच्चा है और दो भालू के बच्चे नीचे पेड़ के है यहां एक झोपड़ी भी बनी हुई है।